फोटो में एक सफेद रंग का दो मंजिला घर दिखाई दे रहा है।

फोटो पानी का बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है।

फोटो में गाड़ी का शोरूम दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मां तारा ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट नाम का एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

में बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक दुकान के जूते के गलियारे को दिखाया गया है।

मंदिर के सामने कई लोग इकट्ठे हैं मंदिर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है मंदिर में कुछ झंडे भी लगे हुए हैं।

दुकान के सामने कुर्सी के पास एक आदमी बैठा हुआ है।

एक ग्रे कूड़ेदान है दीवार पर एक प्लेट स्क्रीन टी_वी है और एक छोटा लकड़ी का बेंच है।

उनके सिर झुके हुए हैं और वे प्रार्थना कर रहे हैं।

इसके सामने सड़क है और बहुत सारे लोग चल रहे हैं।